पानी एक दम साफ है।

यह बाजार का दृश्य है।

इसके ऊपर चढ़ने के लिए पेडीया लगाई गई है और मौसम है वो साफ है।

इसका गेट है वह जाली का बनाया हुआ है और ऊपर एक बिल्डिंग है।

ये एक सहकारी समिति है निमोद जिसका गेट है वो बंद है।

ये बैंक की एक शाखा है भारतीय स्टेट बैंक एश_बि_याई की इसके सामने एक मोटर साइकिल खडी है एक स्कूली भी खड़ी है।

जाली का गेट बना हुआ है जो बंद है व्हाइट कलर का है।

यह एक नाई की दुकान है।

इसके सामने कटिंग के विज्ञापन लगे हुए हैं और सामने एक दो बाइक भी खड़ी है।

यहाँ पर एच_डी_एफ_सी बैंक का एटी_ए_म लगा हुआ है।

इस पर बच्चे की फोटो आइसक्रीम का विज्ञापन लगा रखा है।

ये एक बस स्टेंड है जिसमे काफी सारी बसे खड़ी है और --